यह एक बहोत खूबसूरत सा स्विमिंग पूल दिख रहा है जो कि नीले रंग का दिख रहा है और इस --

झरने की बौछार हो रही है और आसपास बहुत ही जंगल दिख रहे हैं हरे हरे रंग --

इस के आसपास लोग घूम रहे हे और इस ग्राउंड के पीछे बहोत सारे पेड़-पोधे हे जो की हरे हरे कलर की दिख रही --

यह एक बहोत ही प्यारा सा स्विमिंग पुल लग रहा है। जिसका पानी का कलर नीला दिख रहा है।

सब्जीवाले अपने ठेलो में सब्जी बेच रहें हैं और कुछ लोग साइकिल से पार हो रहें हैं और किसी की बाइक सामने खड़ी हुई --

और इसमें फिसलने के लिए बहुत सारी चीज बनाई गई है। जिसका कलर लाल आसमानी पीला लालसफेद अनेक प्रकार के कलर से बनाया गया है।

और उसके बगल में लाइट दिख रही है और फ्लैट के नीचे ही सामने सीढ़ी है बड़ी-बड़ी।